यहाँ पर एक बहोत बड़ा तालाब दिखाई दे रहा है। तालाब में पूरा पानी भरा हुआ है। पानी का कलर वाइट दिखाई दे रहा है ग्रे से कलर का।

एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है जिन्हे --

पोस्टर लगा हुआ है जिसमे येलो कलर बैनर से चौमिन --